देखो जिसका किसी भी व्यक्ति का ये मन मोह लेगा।

यहाँ बैंक से हमें अभी तो ये बैंक अभी क्लोज लग रहा है।

हलकी सी भी चुक इनकी जान जा सकती है।

देखिये लोगो ये जो तस्वीर में दो व्यक्ति दे रहे दिख रहे हैं ये बड़ी गलत कर रहे है इतना जान में जोखिम को करके तस्वीर को नहीं खीचाया जा सकता |

और यहाँ पे बालू गिरा हुआ है कुछ मजदुर भी अंदर काम कर रहे होंगे वो तो दिखाई नहीं दे रहा है।

जैसे की लग रहा है तेरह-चौदा फिट से ही जा रही है।

जो की एक स्तूप दिख रहा है जैन मंदिर स्तूप हाँ स्तूप कह सकते है नहीं बौद्ध मंदिर है।